यहां पर एक व्यक्ति पारियों से नीचे उतरते हुए नजर आ रहा है।

एक व्यक्ति साइकिल की सवारी करके आ रहा है।

इस दृश्य के अन्दर करियर पावर अड्डा टूवेन्टी फोर सेवन और क्लासरूम टू लिखा हुआ --

दृश्य के अन्दर सगुन स्वीटस एंड केक --

सामने रैक में खिलौने रखे हुए हैं ऊपर लाइटें लगी हुई है।